कुछ गेट दिख रहे है पीपल के पेड़ के नीचे बोहत सारे जेंट्स बैठे हुए है साइकिल खड़ी हुई है और बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे है जो की नीले और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहे है।

नीचे मंदिर का कलर येलो दिखाई दे रहा है जिस पे श्री दिगंबर जैन मंदिर लिखा हुआ है नीचे फर्श भी हरा दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पे बहुत सारी दवाइयां शीशियां दिखाई दे रही हैं और --

_एल_एल_ओ_वाई का य बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है ऊपर जाने मकान में ऊपर जाने के लिए दो सीढ़िया भी दिखाई दे रहे है ऊपर बादल भी दिखाई--

दो कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं एक नीचे एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर मकान में खिड़ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसकी मिट्टी लाल दिखाई दे रही है उसमें एक झंडी भी लगी दिखाई दी रही है एगो डस्टबिन भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लड़के कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने बाउंड्री खींची दिखाई दे रही और वो पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।